यह एक स्कूल का गेलरी है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बेठे हुए हैं।

और दो टीचर खड़ी हुई हैं जिनकी साड़ी का कलर ब्लू है।

एक टीचर येलो कलर की साड़ी में है और बहुत सारी विंडो दिख रही हैं।

यह एक स्कूल हॉल है जहाँ पर बहुत सारी टेबुल और बेंच हैं और वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे युनिफोर्म में है कुछ युनिफोर्म का कलर --

एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि चेक्स की शर्ट पहने हुए है पीछे वृक्ष दिख रहे है एक लेडीज़ जा रही है।

यहाँ पर एक बेर हाउस टाइप का है जिसमें एक गाड़ी भरा रही है।

जो की बोरियाँ है वाइट और येलो कलर की और दो व्यक्ति सिर पर बोरी रखे उसमें भर रहे हैं पटिये के जरिए चढ़ रहे हैं ऊपर टिन सेट दिख रहा है लाइटिंग है।

और बहोत सारी पोलिथिन रखे हुवे है एक गमला है गमला में पेड़ -पोधे लगे हुए बोर्ड दिख रहा है।